यह रेलवे ट्रैक है जिसपे लोहे की पटरियाँ बिछाई गई है एकदम सीधे-सीधे।

यह एक भारतीय पोस्ट ऑफिस है जहां पे इसको बहुत ही अच्छा बनाया गया है बाहर बैठने के लिए जगह बनाया गया है इसपे सिंबल भी लगा है पोस्ट ऑफिस का बाहर एक --

हर रंग-बिरंगे हरे-भरे पेड़-पौधे है पीछे की बिल्डिंग भी बहुत अच्छी लग रही है यहां पे काफी भारी मात्रा में चार चक्का गाड़ी खड़ी है अ गेट से बाहर लोग अंदर-बाहर आ-जा रहे है इधर की नजारा बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार प्यारा लग रहा है।

हरी-भरी घास से भी है यहां पर बहुत से लोग अंदर ग्राउंड के टहल रहे हैं खेल रहे हैं कूद रहे हैं मजे कर रहे हैं बहुत ही अच्छा नजारा बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है।

कोई सप्लीमेंट की दुकान दिखाई पड़ती है जहाँ पे कुर्सियाँ रखी गई है लाल कलर का मेज़ रखा गया है पोस्टर चिपकाया गया है बहुत ही भारी मात्रा में पोस्टर चिपकाया गया है एक यहाँ पे आदमी पोस्टर लगाया गया है विराट कोहली का जो हाथ में कोई डिब्बा लेके उसका प्रचार कर रहे है।

घर का निर्माण चल रहा है कारीगर अपना काम कर रहे हैं लकड़ियों से उसको बांध बांध के घेरे हुए हैं एक आदमी उम्म झुका हुआ है अपना काम को अंजाम दे रहा है एक बूढ़ा आदमी खड़ा है।

जहाँ नीचे बाहर रोड पे तीन चार ऑटो खड़े हैं | एक डीजल का ऑटो है सीएनजी का ऑटो है इलेक्ट्रिक भी ऑटो है | जिस ऑटो के पास कुछ लोग खड़े हैं | इधर पेड़ पौधा है | इधर गोल सा आकार सा कुछ बनाया गया है |

यह किसी बहुत ही पुराने मंदिर की तस्वीर प्रतीत होती है जहां पे इसको छोटे-छोटे पावे काट-काट कर इसको बनाया गया है इतनी बेहतरीन डिजाइन बनाई गई है नीचे कुछ लड़कियां खड़ी होकर अपना दर्शन कर रही है फोटो खींच रही है हसी-मजाक कर रही है जींस पहनी हुई है।

यहां भी एक मछलियों का मार्केट है जहां पे हम देख सकते हैं कि एक मछली रखी गई है काफी यह बहुत ही पुरानी हो गई है मेरे ख्याल से ये मर चुकी है यहां पे नीचे भी बहुत सामान बैठे हुए हैं यहां पर स्टूल लगाया गया है मेज रखा हुआ है मेज के ऊपर एक पानी का बोतल रखा हुआ है एक आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है।